यहां पर बहुत सुंदर हरियाली है।

यह एक बहुत बड़ा सुंदर गार्डन है।

यह एक मेडिकल स्टोर है।

और पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

और यहा पर रंग बिरंगी लाइटस लगी हुई है।

यह एक सड़क का किनारा है।

और यहां पर टेबल मेज रखे हुए हैं और यहां--

और यहां पर काफी सारे बॉक्स रखे हुए हैं।

यहां पर काफी सारी मशीन रखी हुई हैं जो काफी बड़ी बड़ी हैं।

यहां पर कुर्सियां रखी हुई है।

यह एक बगीचा जैसा है।

और यहां पर बहुत सारे गमले भी रखे हुए हैं।

और इस दुकान के सामने एक बाइक खड़ी हुई है।

और यहां पर काफी सुंदर लाइट्स लगी हुई हैं।

यहां पर तीन आदमी खड़े हुए हैं।